और ठेले पर सजावट की गई है उसके पीछे है उसके पीछे आसमान दिखाई दे रहा है थोडा पेड़ का थोडा सा झलक --

मुझे यहाँ पर बहुत से तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं | एक घर दिखाई दे रहा है जो की बन रहा है उस मे मिस्त्री लोग लगे हुए है यहाँ पर |

और उसके पूरे बैकग्राउंड में मुझे पेड़ नजर आ रहा है | सामने की ऊपर की तरफ आसमान नजर आ रहा है सामने की तरफ यहाँ खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है |

के तरीके हरे और सफेद रंग से बनाया गया है | उसको पेंट किया गया है | तिरंगे की रंग का ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है | हरा हरा गेट दिखाई दे रहा है | नीम की पेड़ दिखाई दे रही है गेट के अंदर |